ईद का फोटो लग रहा है यहाँ पर चटाई बटाई बिछाया हुआ है और यह ईंटा यह पंखा बंखा भी लगा हुआ है यह और इधर नमाज बमाज पढ़ते है आदमी सब इधर बैनर भी लगा हुआ रे।

मंदिर का फोटो लग रहा है जो की बहोत ही काला लग रहा है और इसपे ये कुछ लगा हुवा है बैनर टाइप का ये झुमका तुमका ये घर का फोटो लग रहा है बहोत ही अच्छा बहोत ही खुबसुरत है।

यह बिस्कुट-बिस्कुट भि रखा हुआ है । यहाँ फॉर्च्यूनर - फॉर्च्यूनर भि रखा हुआ है और बहोत ही अच्छा अच्छा सामान सब है यहाँ बहोत ही खूबसूरत है ।